पीछे की ओर जिसके अंदर हरे हरे भी फूल है लाल लाल भी है नीले नीले भी है।

गोल गोल लाइटें भी यहां पे लगी हुई बहोत सारी --

पे लाल कलर से लिखा हुआ नीचे किसी की फोटो ग्राफ भी बनी है ब्लैक कलर की टी शर्ट पहने है।

इसके अंदर बहुत बड़ा सा मेला नजर आ रहा है जिसके अंदर बहुत सारी लाइटें लगी है वाइट कलर की।

एक बड़ा सा सोफा रखा हुआ है और उसके ऊपर तकिया रखी हुई है।

इसके अंदर एक बड़ा सा मंदिर दिख रहा है जिसकी साइड में लोहे की जाली लगी हुई है।

इसके अंदर एक बड़ा सा मकान नजर आ रहा है जो सामने की ओर है वाइट कलर का पेंट हुआ है।

और एक ही सीढ़ी भी नजर आ रही है सीढ़ी के बगल में एक दुकान है और ऊपर वाले का आदमी भी खड़ा हुआ नजर आ रहा--

बहुत ज्यादा यहां पे भीड़ भी नजर आ रही हैं।

ऊपर नीला कपड़ा है और सामने नीला कपड़ा है कुछ व्हाइट भी कपड़ा है।